अलग फोन की अलग अलग किस्म की फोन भेजा हुआ है।

उस पिक्चर में भी हम देख सकते हैं ये एक मछली की मार्केट है यानी कि फिश मार्केट --

लोग यहा मछली बेचने के लिए आया हुआ है।

और उसका सामने बड़ा बड़ा पेड़ भी है।

ये एक छोटा सा क्लास जैसा है यानी की स्कूल ।

और हम देख सकते हैं सामने टेबल भी रखा हुआ है।

ब्लू कलर की वॉल है और उसका पीछे में एक अलमीरा देख सकते हैं पेड़--

तो इस पिक्चर में भी हम देख सकता है ये ग्लास की अलमिरा बहुत सारा चीज रखा हुआ है।

यानी की क्रीम अलग अलग किस्म की क्रीम चॉकलेट की न्यूट्रेला की और चीज़ भी रखा हुआ है।

इस पिक्चर में हमको देख सकता है यह एक बड़ा नदी है।

और उसका ऊपर में फैन भी रखा हुआ--

तो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं एक बंदा फोटो खींच रहा है यानी कि आईना में खींच रहा है।